इस चित्र में शहीद स्मारक चौरा चोरी काण्ड के बारे में दर्शाया गया हे।

जहाँ पे हमारी भारत के लोग अपनी आजादी को लेने के लिए गए थे।

लोग को अपना शरीर फिट रखने के लिए जिम करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे जिम ट्रेनर भी दिखाई दे रहे है जोकि बाकि लोगों को सीखा रहा है की कैसे जिम करने चाहिए जिम की --

और लोग यहाँ पे अपने-अपने पसंद की लेकर जा रहे हैं।

इसमें ये दिखया जा रहा है की एक आयरन मैंन एक कपड़े को स्त्री कर रहा है।

यहाँ पे कॉलेज को दिखाया गया हे जो कि देवरिया में स्थित --

इस चित्र के माध्यम से हमको ये बतलाया बताया जा रहा है कि जहा पे एक बाइक पॉइंट नाम की एक स्पेरिंग की दुकान है।

जोकि अ जिला में एक सदर रेलवे सदर स्टेशन रहता है। उसको हम लोग सदर कहते हैं और यहाँ एक देवरिया सदर रेलवे स्टेशन को दिखाया जा रहा है जहाँ से --

और बढ़ियां उदाहरण हमारे समाज के लिए --

यह फोटो में सरकारी आवास को दिखाया गया है|